स्टेज में फ्लॉवर्स से डेकोरेशन की गई है। और नीचे भी ये कुछ फ्लॉवर लगे हुए हैं और उसमें बीच-बीच में गुब्बारें लगे हुए हैं। साइड से जीने हैं।

यहाँ पर रोड हेगा और रोड के किनारे पर एक पेट्रोल पम्प बना हुआ हेगा और यहाँ पर साइड में एक ट्रक रख खड़ा हुआ हेगा।

इसका पानी बहोत साफ़ है इसमें कोई गन्दगी नहीं है काफी साफ़ पानी हैंगा यहाँ का। इसमें कुछ कमल के पौधे भी लगे हुए हैंगे इसमें कमल खिल रहे हैं अभी कलियाँ --

यंहा पर अलग-अलग कन्टैनर रखे हुए है जिसमे अलग-अलग तरह का सामान रखा हुआ हैगा और काफी सारे चीज रखी हुई हैनगी ओर प्राइस लगे हुए है सबके ऊपर कोन कितने प्राइस का है।

आस पास बहुत ज्यादा हरा भरा हेगा और काफी कीचड़ भी हेगा| दूर दूर पर बहुत ज्यादा पेड़ लगे हुए हेगे|